एक टेंपू में कुछ सामान आया हुआ है।

जिसमें बहुत सारी औरतें साड़ी पहनकर खड़ी हैं और एक लड़की भी खड़ी है।

य हां पे पीले रंग की बिल्डिंग सफेद और--